मुझे इस फोटो में फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक पुराना स्कूल दिखाई दे--

मुझे इस फोटो पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर कुलर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो पर--